ये क्लास की इमेज है और यहाँ पे लेक्चर चल रहा है शायद बोहोत ही इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट का लेक्चर चल रहा है।

क्लासरूम काफी अच्छा है लाइट्स वगेरा भी सब --

रेलवे स्टेशन काफी खाली दिखाई दे रही है और एक भी ट्रेन भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फ़िलहाल यहाँ पे और लोग भी बोहोत कम दिखाई दे रहे हैं।

और इसकी सर्जरी कर रहे हैं।

कम खाना चाहिएं इसलिए यहाँ पे ज्यादे भीड़ भी नहीं दिखाई दे रहीं है।

इसलिए लोग यहाँ पे फोटो ले रहे हैं शायद --

और कोई पर्फोमंस हो रही है जोकि बच्चे प्ले कर रहे है और यहाँ पे --

परफॉरमेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोहोत ही अच्छी परफॉरमेंस --

एकत्रित हुए है। यहाँ पे छठ --

ये एक मैंरिज हॉल का व्यू है जहाँ पे --